टेबल के ऊपर अलग अलग बर्तन में खाने की चीजें रखी हुई दिख रही हैं।

यह फोटो किसी फर्नीचर की दुकान की--

ब्यूटी पार्लर नजर आ रहा है।

खाने की चीजें नजर आ रही है।

रेड कलर का बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ दिख रहा है।

कंपाउंड किया हुआ नजर आ रहा है।